यह खेत में बच्चे लोग --

यहाँ पर सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली द्वारा मान्यत् प्राप्त है।

सेंटर है यहाँ पर लोग आकर अपनी बॉडी बनाते हैं।

यहां इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बोधगया है।